लता नर्सिंग होम है।

कितना परसेंट लोग जाता है त अच्छा होके आता है।

मट्टी नहीं देता है। लोग यहाँ से तेल खरीद ते है। दो चका चार चका द दस चका हर चीज में तेल भराता है। यह पेट्रोल पम्प है। पुराना पेट्रोल पम्प है। अ --

म मस्जिद दो ठो है और बहुत बड़ा है और मुसलमान लोग इसमें बहुत अपना धर्म से नमाज पढ़ते हैं। यह सो --

और पिकनिक मनाता है बहुत सारा इसमें पेड़-पौधा है हरा-भरा है।

यह गोलंबर है यह बहोत सुंदर गोलंबर है।